यहाँ पर भगवान जी शंकर जी की मूर्ति बनी हुई है जैसे स्वामी जी भी बैठाए जाते है कहिं एक आदमी भी बैठा हुआ दिखाई देरा--